कुछ वाहनों को हम देख पा रहे हैं।

एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर हमें चित्र में दिख रहा है।

पास बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे सब्जियां बाजार के अंदर मौजूद है।

मार्केट में लाइट्स दिखाई दे रहे हैं।

ग्रिल्स के रंग हरे जैसे है।

आसपास पेड़ पौधे मौजूद है।

यह चित्र एक जिम से लिया गया है।

रस्ते के बीच डिवाइडर्स मौजूद हैं।

डिवाइडर्स के रंग पीले और काले हैं।

कुछ लाइट्स रूम के अंदर जले हुए हैं।

हमें खिड़कियां नजर आ रहे हैं।

हमें एक टेबल और टूल दिखाई दे रहा है।

प्लेट को एक टेबल में रखा गया है।

यह चित्र में हमें कुछ भगवान के मूर्तियां देख रहे हैं।

कंसेशनर एक कंपार्टमेंट के ऊपर लिखा है।

एंवीश में लाइट्स लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक छोटा सा स्टेज नजर आ रहा है।

यह छवि में हमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है।

हमें एक पोस्टर नजर आ रहा है।

बहोत सारी किताबें हम देख पा रहे हैं।

यह चित्र में बहुत सारा हरियाली दिख रहा हैं।

यह छवि में हमें बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड घास पूस से भरा हुआ है।

ऐसा लगता है कंक्रीट है।

सीढ़ियों के आगे एक एंट्रेंस है।

क्लासरूम में बहुत सारे डेक्स और बेंचेज है।

दो लोग स्थान में मौजूद है।

दोनों लोगो के मुंह ब्लर किए गए है।

कुछ पिलर्स को हम देख पा रहे हैं।

फूलों से गुरुद्वार को सजाया गया है।

हमें कुछ पर्दे खिड़की में दिख रहे है।